ई ई दुकान में जिसमें फ्रीज है फैन है टी.वी. है लाइटे हैं। इसमें वाशिंग मशीन है।

इसमें लाइटें लगी है। ब्लू कलर की कुर्सियां है रेड कलर की काल्ला कपड़ा --

अलग-अलग तरह के एक छ ये रखे हुए है और इसमें अलग-अलग तरह के है अह जिसमें एक आदमी ने शर्ट पहना हुआ है। लाइटिंग --